और रिब्बन भी है नीचा में गिरा हुआ है आदमी खड़ा है व्हाइट कलर का टी शर्ट लिखा पहना हुआ है और जिन्स पहना हुआ है चप्पल पहना हुआ है टोपी पहना हुआ है व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है बोहोत अच्छा लग है देखने मे।

ग्रील गेट है। व्हाइट और हम रेड कलर का कलर किया हुआ है मकान मे। गमला मे बहुत सारा फूल लगाया हुआ है। बहुत अच्छा दिख रहा है आदमी सब। बच्चा सब बेठा हुआ है।

ये जो है स्टूडेंट लोग का काम कर रहै है। जो की बोहोत अच्छा टेबल बना है। स्कूल है। दिन का टाइम है। है व्हाइट कलर का रेड कलर का कलर किया हुआ है। टेबल है। टेबल के ऊपर कर रहा है। पीछे दिन का टाइम है। रोशनी आ रहा है।

ये जो हे फिश मार्केट है। लाल गाड़ी वाला आदमी खड़ा है। वो व्हाइट कलर का स चप्पल पहना हुआ है फिर और फिर आदमी खड़ा हुआ है और बहुत आदमी बैठा हुआ है। साइकिल लगा हुआ है। छोटा छोटा फिश है।

बैनर है एक आदमी ठंडी के अ ये मौसम है लगे रोड पे खड़ा है ग्लैमर गाड़ी है खड़ा है अ अ साइकिल खड़ा है बहुत आदमी खड़ा है बहुत आदमी बैठा हुआ है यूज कर रहा है।